इस इमेज में सामने एक नदी दिखाई दे रही है।

इस इमेज में सामने एक गेट दिखाई दे रहा है यहां पर एक स्टैचू भी बना हुआ लगा है।

यहां पर जंगल दिखाई दे रहा है।

और दो दांत भी नजर आ रहे हैं।

और ऊपर मेट्रो पुल भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने यहां पर दुकान दिखाई दे रही है अंदर कुछ सामान रखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने यहां पर टेबल कुर्सी रखे हैं उस पर टिशू पेपर रखे हुए हैं।

इस इमेज में सामने यहां पे रोड के पास में एक जयपुर हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है।

और सामने लैपटॉप भी दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक मीटिंग चलती दिखाई दे रही है जहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं।

और सामने कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर एक लड़का किट पहने खड़ा है सामने एक लड़की को चेक करता दिखाई दे रहा है।

और यहां पर एक बोर्ड भी लगा नजर आ रहा है।

और सामने कुछ बिल्डिंग भी नजर आ रही है।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

इस इमेज मे सामने रोड दिखाई दे रही है जिस पर कार चलती नजर आ रही है।

और कुछ बिल्डिंग भी यहां पर दिखाई दे रही हैं।

साइड में ड्रेसिंग टेबल भी है और यहां पर लाइट भी जलती नजर आ रही हैं।

सब ने सफेद रंग की टोपी लगा कर नजर आ रही है।

इस इमेज में सामने यहां पर कुछ दुकानें बनी हुई हैं यहां पर देखो सामान नजर आ रहा है।